बड़ा सा काँच का हॉल अह है उस हॉल में लाइन से बहुत सारी ई चेयरे बिछी हुई है।

अह पौधो के पीछे कुछ मकान सा बना है और आगे खाली ही रोड है और रोड के पास एक लंबी सी डोरी ही लगी हुई है।

यहाँ एक पुरानासा प्राचीन सा मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर के उपर कुछ बारीकी से चित्रकला की गयी है और नीले बादल दिखाई दे रहे है।

मस्जिद की दीवार पर सफ़ेद कलर अह का पेन्ट किया हुआ है।

मज्जीद के एक और अह हरे भरे बड़े से पेड़ पौधे लगे हुए है।

थोडी दूरी पर एक व्यक्ति अपनी बाइक के पास खडा है।

उस व्यक्ति ने नीले रंग की टीशर्ट पहनी है।

नाव के अंदर बहुत सारे व्यक्ति ही बेठे हुवे अहम तालाव के किनारों पर बड़े-बड़े पेड़ लगे है।

बड़ी सी बैंक है। बैंक के गेट के ऊपर नीले रंग का पोस्टर लगा है।